टेबल को साफ करने मे लगे हुए हैं और टेबल के ऊपर एक सफ़ेद कपड़ा रखा हुआ है।

रूम खुला हुआ है और उसके पास छोटे-छोटे पौधे भी उगे हुए हैं।

यहां पर दिख रहा है कि एक नदी है और नदी मे एक पंडुपी सी तैरती हुई नजर आ रही है और --

यहाँ एक बड़ा सा मैदान है। एक बड़े से मैदान मे छोटे-छोटे पौधे उगे हुए है और उसमे एक लोग टहलते हुए नजर आ रहे हैं। उन --

ऐसा लग रहा है की उनकी टांग मे मोच आ गई हो। इसलिए वो लेटे हुए दूसरे भाई साहब उनकी टांग पकड़े हुए हैं।

ओर उसके पास में बोहोत सारी फोर व्हीलर व थ्री व्हीलर टेमपु भी खड़े हुए हैं और एक मोटर साइकिल बाइक पर --

और यहाँ पर रेस्टोरेंट अंदर कुछ टेबले व कुछ चेयरे पड़ी हुई हैं।

यहाँ पर एक बड़ा सा घर बना हुआ है। उस घर के अंदर दो लोग एक लोग बैठे हुये हैं और दूसरे लोग खड़े हुये हैं और वो --

तो भी बोहोत अच्छी तरीके से से डिजाइन किया गया। उस पर ब्लैक वाल लाल रेड से पेंट किया गया है।

हैं और इसमे बोहोत सारी लाइटे लगी हुई हैं और इसके ऊपर भी कुल लाइटे लगी हुई हैं।

यहाँ पर एक बड़ा सा मकान बना हुआ है। उस मकान के पीछे दूसरे साइड में बहोत सारे वृक्ष खड़े हुये हैं और वो वृक्ष कुछ उसमें से नारियल के वृक्ष हैं और --

यहाँ पर एक शादी कराई जा रही है। जिसमे एक लड़का और एक लड़की दोनों ही बो सफेद कलर के कपड़े पहनदे हुए हैं और एक पंडित बैठा हुआ है जो उनकी गाँठ बांध रहा है और उनके पास मे दो बड़े-बड़े बर्तन रखे हुए हैं।

यहाँ पर दिख रहा है। एक बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है। उसमें बहोत सारे रूम हैं और उनके पीछे एक टावर भी खड़ा हुआ है और उनके पीछे बहोत सारे बड़े-बड़े वृक्ष भी खड़े हुए हैं और उनके आगे --